पुल बनाया गया है। यहाँ पे --

रेड कलर व्हाइट कलर येलो कलर ।

एक बैटिंग कर रहा है एक बोलिंग कर रहा है। आ --

और बाइक लगा हुआ है एटीएम के बाहर में --

तरह -तरह के फूल गुलदस्ता --

रखा हुआ है। यहाँ पे माला भी --

बाल कटाने के लियेदाढ़ी बनाने के लिये --

यहाँ पे कुछ लड़के लड़कियां खड़े होके --

फोटो खिचवा रहे। यहाँ पे --

मेदान के बगल में बहोत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे --

काफी सुंदर लग रहा है देखने में।

यहाँ पे बहोत बड़े- बड़े पेड़ दिखाई दे रहे --

फूल की माला से शिवलिंग को चढ़ाया गया है।